यहाँ पर बेड पे लेटा हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसके दोनों घुटनों में पट्टी बाँधी हुई है।

क्रू रनिंग रूम साहेबगंज नाम का नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर काफी सारे लोग नजर आ रहे है एक लड़की के पास सूटकेस नजर आ रहे है।

और बिच में दरवजा है बिल्डिंग की दरवाजे के बहार काफी सारी बाइके और एक्टिव खड़ी हुई है।

बिल्डिंग में अब हरे - हरे काफी सारे पेड़ और बिल्डिंग के बहार भी पेड़ नजर आ रहे है ।

निचे की जमीं पे फर्स लगा हुआ है जो हरे रंग का है और लाल रंग की दीवारे है ।

बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है जो की घुमावदार सिडिया बानी हुई है और उसके ऊपर खड़ा हुआ है।

वहाँ ऊपर बड़ी बड़ी दो फ्लाइटे नजर आ रहे है यहां पर एक रेलिंग नजर आ रही है।

कैप्टन छह सौ इ.क्यू .आर. लिखा हुआ है।